इस इमेज में यहां पर ये कुछ दुकानें दिखाई दे रही है।

और नीचे कार और ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहे हैं।

पीछे यहां पर एक बड़ा सा पहाड़ भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो तीन बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर स्टेज पर माताजी की मूर्ति सजी हुई दिख रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल में कुछ लोग नीचे बैठकर योगा कर रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है यहां पर दो तीन गाड़ी और कार खड़ी हुई है।

और एक सामने बोर्ड लगा है जीस पे लाइब्रेरी लिखा हुआ है बाहर यहां पर दो तीन डस्टबिन भी रखें हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक मोर खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पर कुछ यात्री भी नजर आ रहे हैं।

सामने यहां पर महावीर राबड़ी भंडार लिखा नज़र आ रहा है।